यइ अपना यहाँ का जगदलपुर का दंतेश्वरी माई जी का मंदिर है यहाँ के दूर-दूर से मंदिर है बहुत प्रचलित मंदिर है यहाँ के राजा रहा करते थे यहाँ का दंतेश्वरी माई के नाम से दशहरा वशहरा सब बनता है।

यहाँ के लोग दूर-दूर से आते है नवरात्र दशहरा वशहरा में रहते है और बड़ा धूमधाम से बना--

ये हस्त शिल् की दुकान है दुकान में अपना मट्टी का भी बनाते हैं यहाँ के लोग मट्टी का खिलौने बनाते है और घोड़ा है हाथी है।